उसके पीछे एक रैक बना हुआ है।

एक ट्रेन उसके पास नजर आ रही है।

पीछे भी ब्लैक कलर की कुर्सियां खाली पड़ी हैं।

एक आदमी कैंची लिए हुए खड़ा है।

सामने एक लाइट बड़ी लगी हुई है।

और कुछ लोगों ने मोबत्तियां जगाई हुई हैं।

येह एक बहोत बड़ा पैलेस है।

नीचे एक सामने बाल्टी पई हुई है।

जहां एक पत्थरों की कंद बनी हुई है।

पीछे एक झोपड़ी नजर आ रही है।

जहां एक तंजू पेस्टिसाइडर शॉप है।

उस साइड पे थोड़े पत्थर पड़े है और एक घर नजर आ रहा है।

आगे छत पे एक पंखा लगा हुआ है बाहर से धूप अंदर आ रही है।

और एक डायरी दिख रही हैं कांच का ग्लास नजर आ रहा हैं।

बहुत चेयर ब्लैक कलर की पड़ी हुईं हैं टेबल का कलर व्हाइट हैं।

इधर काफी गमले पड़े हुए हैं गमलो में बहोत सुंदर ग्रीन फूल हैं।